इस फोटो के अंदर एक पार्क का दृश्य दिखाया गया है।

सड़क के किनारे तीन बाइक लगी हुई हैं।

बिना बनी हुई सड़क नजर आ रही है इसके ऊपर एक सफेद कलर की कार खड़ी दिखाई दे रही है साथ में ही लाल कलर --